और बिजली के तार भी नजर आ रहे है।

आ रही है बहुत बड़ी है बिल्डिंग --

और एक विंडो भी नजर आ रही है।

कर रखी है और छोटे छोटे खंबे भी नजर आ रहे हैं।

प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है।